अरे इस चित्र में तो हमको एक फ़िसलबंडा दिखाई दे रहा है जो बच्चो का खेलौना है और तीन से चार फुट का होगा यानि की बहुत बढ़िया होगा।

ये सभी बहुत वेरिटी-वेरिटी के समान है।

बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जो खेल रहे मैदान में और बहुत बड़ी जिसपसी खेल --

इस चित्र में ड्राइंग एंड ड्राइंग दिखाई दे रही है वो टेबुल के ऊपर रखे हुए है और वो ड्राइंग मैं बोलूंगा क्या-क्या है।

और दूसरे जान हो तो खिड़की को मार रहा है वो बहुत रुवर्य और निचे फर्श भी ग्रैंडेड बन्दे डाले हुए है यानि की बहुत आमोन चल रहा है उसको |

पिले आसमान भी दिखाई दे रही है बहुत सारे दुकान दिखाई दे रहे है।